और काफी समान भी रखा हुआ हैं यहाँ हम खाने के लिए जाते समान खाते हैं बहुत अच्छा लगता है।

यहाँ पर ये बहोत सुंदर नदी है और नदी के किनारे काफी पेड़ पौधे हैं और हमें बादल भी दिखाई --

यहाँ पर एक दुकान है काफी दुकान हैंजो--